यह पार्क ह। जयमाला सिस्टम ह कुर्सी लागल बा। भगवा कलर बा। सफेद बा।

छठ मइया क गीत गवाता लइका आइल बाना सन भीड़ लागल बा मेहरारू पानी में डूब आधा गगरा --

नाचतड़ी अ गाना गावा तर लोग लाल मेज लागल बा लाल दर्री बिछल बा।

स्कूल ह जंगला बा मेज बा लाईका परीक्षा देतानसन मैडम बाली मास्क लगाउले बाली पेपर चलता।

झुला लागल बा बड़का-बड़का झुला लागल बा एगो दुगो तीन्गो सर्कस लल लागल बा।

मूर्ति ह जय माता विधवासनी लिखल बा सरस्वती जी के मूर्ति ह माला से सजावल बा लइका पैर छू के फोटो घीचावता लोअर पहिनले बा।

फूल ह चुनरी पहिनले बाली सरस्वती माता।